मेंटेन का पोल चारो तरफ से बंद चारो तरफ से बंद रहता है जितना आपका पसीना बहेगा उतना आपका फैट कम होगा |